और एक औरत बीना बजा रही है और एक औरत माइक में कुछ बोल रही है और यहां एक आदमी भी बैठा हुआ है।

यह एक अस्पताल है। इस अस्पताल में बहुत साड़ी लाइटे लगी हुई है। और यहाँ पे शीशे का गेट लगा हुआ है। यह अस्पताल बहुत ही बड़ी है। और यह अस्पताल बहुत ही साफ़ है।

यह एक सड़क है । इस सड़क के बगल में एक घर है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं ।

और यह सब रिक्शा अभी एकदम खाली है इस जगह को चारों ओर से घेरा गया है और यहाँ लाइट भी लगी हुई हैं।

यह घर है इस घर में बहोत सारे लोग हैं और यहाँ एक दो मूर्तियाँ बनाई गई हैं।

यह एक पूल है । यह पूल बहुत ही लम्बी और चौड़ी है । यह पूल नदी के बीच में बनाया गया है ।